यहां पर एक लड़की है लड़की के बाल खुले है ऊपर सिर के ऊपर चोटियां बनी हुई है।

इस दुकान के अंदर यह कपड़े की दुकान है यहां पर तरह तरह के कपड़े मिलते हैं अलग अलग कलर के।

पेड़ की डाले दिखाई दे रही है सामने लाइट वाले खंभे लगे हुए है बिजली वाले तार लगे हुए है।

इधर अंदर जाने के लिए बाहर सीढ़ियां लगी हुई है सीढ़ियों के पास गमले पड़े हैं गमलो के ऊपर छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है गुब्बारे पड़े है।

दुकानों के आगे बहुत सारे आदमी खड़े हैं कुछ बुजुर्ग आदमी है कुछ महिलाएं हैं कुछ लड़के हैं कुछ छोटे बच्चे हैं।

यहां पर बहुत सारा पानी है और पानी के अंदर इधर लोहे के जंगले लगे हुए हैं।

और पेड़ों के साइड में वहां एक सफेद कलर का घर दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा घर है ऊपर गहरे बादल छाए हुए है।

यहां सामने कुछ दुकाने है दुकानों के आगे एक--

इधर की साइड एक मोटर साइकिल खड़ी है सामने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।